और एक ने आसमानी कलर और एक ने ब्लैक कलर की साड़ी पेहनी हुई है।

और एक लग रहा है भरवा के जा रहा है और यहाँ सामने एक तितर है जो की पेट्रोल भरवा रही है ये मुझे लग रहा है।

और सभी ने नीले कलर का कपड़ा पहना हुआ है।

और मुझे लग रहा है ये लोग कोई--

और रेड कलर फ्रॉक पहनी हुई है एक सफ़ेद कलर का और सामने एक टीचर जैसी ओरत खड़ी है जो ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई --

और रोड उधर चर्च की तरफ़ जाने के लिए दिख रहा है जोकि मिट्टी कलर का है और कलर का दिख रहा है।

अम बगल में ढेर सारे पेड़ पोधे लगे हुए है फूल के भी फल के भी एक केले का पेड़ दिख रहा है ढेर सारे लाल लाल फूल दिख --

सब्जी में टमाटर दिख रहा आलू दिख रहा लहसुन दिख रहा है इधर भी फूल गोभी दिख रहा है।

जिसका पिलर जो है वो कि लाल और ग्रीन कलर का है और ऐ एक आद पिलर ऑरेंज कलर का भी है इसमें ढेर सारे बच्चे जो है वो नोका --